यहाँ पे एक गु गुड्डा बना हुआ है जो हाथ को ऐसे हाथ खुला करके बैठा है।

और एक त्रिशूल सा बना हुआ है ऊपर और एक पेड़ पौधे है बोर्ड बना हुआ है और गाड़िया भी चल रही है बाइक उसके पीछे चल रही है और रोड पे कई सारे शॉपे भी लगी हुयी है।

निचे गार्डन है फ्लोवर लगे हुए है और क्या कहते है तीन लेडीज भी खड़ी हुयी है पार्क है एक अच्छा सा जगह --

बोर्ड पे लिखा हुआ है वैसे पेंट भी किया हुआ है ऑटो खड़ा हुआ है ऊपर एक बिल्डिंग है सामने ऊपर एक पेड़ पौधे लगे हुए है उसके पास में भी ऑटो खड़ा है।

जनरल स्टोर है यहाँ पे बोर्ड बना हुआ है इसमें जनरल स्टोर में सारी चीज़े सामान मिलता है।

है और यहाँ पर फर्श बहुत अच्छा लग रहा है देखने में चेयर्स खाली है बोर्ड बना हुआ है यहाँ पे पीछे एक विंडो बनी हुयी है पौधे लगे हुए है।

बिल्डिंग है बिल्डिंग काफी बड़ी ऊँची सी है इमारत सी उसमे शीशे लगे हुए है और कुछ कपडे सुख रहे है पेंट लगा हुआ है बाहर सामने बिल्डिंग के बाइक ख़ड़ी हुयी है।

निचे टाइप का दिया गया है और बैंक अंदर जाके है और ए सी भी लगी हुयी है वहा पे एक बोर्ड भी लिखा हुआ है।

यहाँ एक पेड़ लगा हुआ है बाहर और और क्या कहते है एक मंदिर है यहाँ पे सफ़ेद रंग का और क्या कहते है एक झोपडी लगी हुयी है बनी हुयी है और गाड़ी चल रही है।